और वहां पर एक कुर्सी है कुर्सी का कलर मेहरून कलर का है.

ये स्टेज पर कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग में एक लड़की है जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए खड़ी है उसी के बगल में एक आदमी है जो अह ब्लू रंग का शर्ट और वाइट रंग की जींस पहने हुए है।

एक आदमी अपने आप को शीशे में देख रहा है तो दूसरा पुसअप लग रहा है.

पे एक मोटरसाइकिल है और एक साइकिल है एक नीले रंग का कपड़ा पहने आदमी वहां खड़ा है और--

उसकी दुकान में बहुत रंग की पेंट है जैसे कि पीला लाल नारंगी अ ऑरेंज और पर्पल साथ ही साथ बाहर पेंट करने वाले ब्रश भी रखी गई है एक टेप--

एक केक शॉप है वहां पे छे ठी-सिलेंडर रखा हुआ है एक साईकल है एक आदमी खड़ा हे जिसने नीले रंग की शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहेन रखी --

पर लाइट जलने के लिए पेट्रोल पंप की बहोत सी चीजे दिखाई--

गोपालगंज में सिटी सेंटर सलून खोला गया है।

बगल में एक सटर बंद है नीचे ग्रीन कलर के कारपेट बिछे हुए हैं।

पीछे की दिवाल पे बोहोत ही सुन्दर चित्रकला की गयी हे.

पीला रंग का वस्त्र पहना है वही बच्चे उजले रंग का पानी बह रहा है.

बहोत संख्या में एक जगह भीड़ है वहां।

पीछे एक व्यक्ति भी है बगल में बहुत सारे लोग हैं।

जिनके हाथ में बुक्स हैं और रूम दरवाजा ऊपर झालर के जैसा कुछ स्टार शेप में कुछ लटका हुआ हैं.

वह बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं नीचे हरियाली है वहां पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं अंडरग्राउंड किया गया है.

सुविधा केंद्र की तस्वीर हैं.

छठ पूजा की दृश्य दिखाई दे रही है। जहाँ पर सारी महिलाएं और अ पुरुष सभी बैठे हुए हैं।

बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई है एक बोलेरो साइड में लगा हुआ है।

यह कुछ लोग इधर उधर जा रहे हे एक औरत और आदमी दोनों मिलकर एक बेग टाँगे हे औरत

दुकान के ऊपर श्री शुक्ला ट्रेडर्स लिखा हुआ है और वहां पर जो दूकान के भीतर अंधेरा है.